पेपर प्रिंटिंग मशीन है दो अं टेबल पे जो रखी हुई है सामने खिड़की नजर आ रही है वायरिंग के दोनों के--

आं बिजली की डी_पी नजर आ रही है पेड़ लगे हुए हैं सामने छोटा गार्डन नजर आ रहा है।

उम एक भगवान पे माला चढ़ी हुई है। भ भोलेनाथ पार्वती जी की तस्वीर है। गणेश जी की तस्वीर है। पूजा सामग्री नजर आ रही है।

की गार्डन नजर आ रहा है जिसका गेट खुला हुआ है।

ये एक बस्तर डेरी फार्म है जहां दूध मिठाइयां चॉकलेट और कुरकुरे की थैली जहां--

यह एक घर का हॉल नजर आ रहा है जहां सोफे है।

गुलदस्ता रखा हुआ है उसपे एक कॉपी भी रखी हुई है।

एक झूमर की दुकान न दिख नजर आ रही है जहां--

हाल के अंदर एक पेड़ भी है।

हैं जिसमें बाहर गार्डन नजर आ रहा है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं ग्राउंड जैसा दिख रहा है एक बस नजर आ रही है।

यह एक मेडिकल दुकान हैं जिसमें कई प्रकार की दवाइयां रखीं नजर आ रहीं--

ये एक प्रकार का कैफे नजर आ रहा है कैफे हैं।

बाहर कुछ झरने जैसे फूल बने हुए हैं जिसमें से पानी आ रहा है कु--

यह एक राखी की दुकान नज़र आ रही है जिसमें बहुत प्रकार की राखियाँ हैं हैं और बोर्ड भी नज़र आ --

ऊपर भी बैलून टंगे के सामने भी बैलून हैं।

ये एक साइकिल की शॉप नजर आ रही है जहां पर लाइन से साइकिल रखी हुई दिख रही हैं।

बाइकोन सेल की जाती हैं बहोत सी बाइकोन दिख रही है सामने एक सीढ़ी --

एक आदमी स्लिप कर रहा है एक छोटी बच्ची स्लिप कर रही है साथ में उसकी मम्मी खडी हुई है।

यहां तालाब पे बहोत सारे लोग कुछ उनकी पूजा कर रहे हैं।

पेड़ों की काई लगी हुई ऊपर किले के ऊपर एक खंभा नज़र आ रहा है ऊपर सफेद बादल नज़र आ रहे हैं।

नीचे भी हरियाली पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

ये एक झरना है जिसमें दो आदमी नहा रहे हैं।